यह श्लोक है य कुछ अ ग्राफिक कर रहे है और रोड को चेक कर रहे है।

बांधे रखा है जाल बना के रखा उन्होंने और उसमे एक पाइप भी लगा हुआ है रात का समय है।

यह है जोकि फोटो किल्क कर रही है। हाथ में फोन लिए हुए हैं। स्माइल कर रही है। पीछे लड़का खड़ा है। बाइक पे पिछे कुछ --

पानी का धाराओं को रोकने के लिए बनाए हुये हैं बहाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

जो सीढ़ियों पे नीचे खड़े हुए है का काफी घर है।

उन्हे जिसमें एक लड़का अपने हेयर अ ब सर्विस करवा रहा है। मतलब सॉरी हेयर कट करवा रहा है।

पानी का तालाब है बहुत बड़ा और नदी है बहुत बड़ी है। यहाँ पे समुंदर है बीच का किनारा है। यहाँ पे नाव है शायद दो नाव है।